यह फोटो भी किसी मस्जिद के पास की है जिसमें की मस्जिद के ऊपर एक मिनाल दिखाई दे रही है उसमे कुछ माइक लगे हुए भी दिखाई दे रहे --

--की गोल्डन कलर का कपड़ा ढका हुआ दिखाई दे रहा है और आगे मे ऊपर की साइड मे बहुत सारी लाइटे भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही है और ऊपर की साइड मे भी लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है तथा कुछ घूमते-फिरते जैंट्स लेडिज --

यह फोटो किसी क्लास का है जिसमें बहुत सारे स्टूल और बेंच लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर एक फैन भी दिखाई दे रहा है तथा एक ब्लैक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक फैन भी दिखाई दे रहा है तथा एक ब्लैक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है उसी के पास में एक गेट भी दिखाई दे रहा।